ये एक थाली है जो ब्लैक कलर की थाली है इसमे भाजी बड़ा --

जो एक खेत है यहाँ पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं जो की पत्ते की खेती की जाती है |

ये एक बस है बस पर दिल्ली-बिहार-दिल्ली लिखा हुआ है बस वाइट कलर की है इसमें ब्लैक कलर के का--